यहां मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है। दुकान में कुछ पानी की बॉटल्स दिखाई दे रही है। यह पर मुझे कोल्डड्रिंक्स भी दिखाई दे रही है। दुकान में दो आदमी दिखाई दे रहे है। यहां पर मुझे आइस्क्रीम वाली फ्रिज भी दिखाई दे रही है।

फ्लिप करते हुए दिखाई दे रहा है | यहाँ पर मुझे सड़क की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं लग रही है पर आसमान बहुत खुला दिखाई दे रहा है और यह देखने में अच्छा लग रहा है।

यह मुझे एक डेयरी का पोस्टर दिखाई दे रहा है जो की दिखने में बोहोत ही शानदार लग रहा है यह पोस्टर का कलर ब्लू रेड लाइट ब्लू दिखाई दे रहा है यहां पर एक म-म -मूर्ति भी लगी हुई दिखाई दे रही है ।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

एयरपोर्ट के बाहर का हिस्सा दिखाई दे रहा है और यह बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है क्युकी इसमें ग्लासीस लगे हुए है।

यहाँ मुझे एक शादी का स्टेज दिखाई दे रहा है जो की बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है यहाँ पर मुझे कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है और ये ज्यादा चमक रहा है यहां पर मुझे कुछ तोफे भी रखे हुए दिखाई दे रहे है।

कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं| यहाँ पर मुझे चयर रखी हुई दिखाई दे रही है| यहाँ पे मुझे लाइट की लाइन जाती हुई देखी दे रही है जो की बहुत ही अत्त्रक्टिव लग रही है।